और इसके पीछे एक आदमी है जो नीली बिन चप्पल पहनकर घूम रहे है और--

और बहुत ही अच्छा ग्राउंड है यहाँ पर खेल खेलते है क्रिकेट बास्केट बॉल ये सब खेल होता है यहाँ पर--

यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर बहुत जन आए हुए हैं और--

यह बहोत ही खूबसूरत है और आगे एक भारत का ध्वजा लगाया गया है और बहोत खूबसूरत है।

और काफ़ी सुविधा जनक होती है और बहुत ही अच्छा है यह--